यहाँ पर एक ट्रक है छोटा उसके साइड में बड़ा सा पुल है उसपे रोड बना हुआ है नीचे बाइक से आदमी सब जा रहे है एक आदमी का बाइक पाई लाल बैग है यहाँ पे बगल में पेड़ पौधा भी है ।

उसके साइड में बहुत सारे पेड़ छोटा-छोटा बहुत ज्यादा फील्ड की चारों साइड पेड़ लगा हुआ है।

दो पेड़ है बड़ा-बड़ा पेड़ है यहाँ पे फिल्ड है जो की यहाँ साइड में एक गई है यहाँ बहुत सारा पेड़ है बहुत पेड़ है बड़ा-बड़ा पेड़ है यहाँ पे इसके साइड में छोटा-छोटा पेड़ है।